की दीवाल है। उस पर एक स्टीकर टंगा हुआ है। बाहर एक सामने एक राधा कृष्ण की मूर्ति है जोकि बहुत सुन्दर व्हाइट् कपड़े और गोल्डन वर्क से सजी हुई है उस --

दो बच्चे हैं जो स्टेचू के जो कि एक लड़का उस पे टंगा हुआ है | नसैनी पर एक लड़का उस नसैनी को पकड़े हुए है| नीचे एक बड़ा सा स्टेचू लगा हुआ है| चारों तरफ मिट्टी फैली हुइ है | हल्की- हल्की धूप है | बड़ा सा ऊपर पीछे एक--

सामने एक उगता हुआ सूरज है और कुछ लोग हैं जो कि पार्क है उस में घूम रहे हैं| चारों तरफ से कुछ डंडे हैं| लाइटिंग लगी हुई है| कुछ एक आगे लड़का है जो कि ब्लैक कलर की टी-शर्ट और एक चड्ढा पहने हुए है।

रखा हुआ उसके चारों तरफ कुछ लोग घूम रहे है। एक बड़ा लोहे का गेट है जिसमें कुंडी लगी हुई है बगल से कुछ लोग खड़े हुए है। चारों तरफ से वो लाइटिंग का उजाला हो रहा है। पीछे एक पेड़ का उजाला हो --

पीछे एक नदी है उसके नीचे बगल से कुछ पत्थर डले हुए है कुछ दूर है और एक ना- नीचे प- एक सड़क निकली हुई है ऊपर एक खुला आसमान है। पीछे से एक घर बना हुआ है।

नीचे एक स्कूटी बनी हुई है चारों तरफ से खुला पानी है नीचे कंकड़ है कुछ पत्थर डले हुए है और कुछ हरा घास है कुछ सुखा घास है।